हेलो गाइस आप लोग देख रहे हैं की ये एक जो है ए.के फिटनेस जिम सेलिब्रेशन हो रहा है यानि यहाँ पे फिटनेस जिम का जो है।

एक लड़की ब्लू कलर का टॉप पहनी है | एक लड़की वाइट टी-शर्ट एक लड़की ब्लू और पिंक में मिक्सउप पहनी है | तीनो ही बच्चे बहुत ही क्यूट और सुंदर लग रहे है और तीनो बच्चे मन लगा कर डांस सीख रहे --

जो अपना त्यौहार बड़े ही मगन और सब चीजों के साथ खेल रहे हैं और कर रहे हैं।

क्युकी प्रॉपर रूप से सूर्ये की रोशनी नहीं आ रही है और इधर सामने भी मंदिर है इधर साइड बाहर जाने का रास्ता है।